इसका मतलब ये बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है | इसके साथ में एक स्टील का डस्ट्बिन रखा है और यहाँ पर टाइल्स भी लगी हुई है ।

इस तस्वीर में झील के बीचों बीच लोटस फूल उग रहा है।

ये एक दुकान की तस्वीर है जहां पर एक बच्चे का पुतला है और उस पुतले ने एक येलो कलर की फ्रॉक पहनी है ये फ्रॉक बेचने के लिए है।

इस तस्वीर में एक काले रंग की गाय है जोकि घांस खा रही है। ये घाँस मशीन से काटा गया है।

शॉपिंग के लिए स्वेटर हैं ब्रश है बच्चों के लिए कपडे हैं और भी बहोत सारी चीज़ें हैं जो हम खरीद सकते हैं।

पेड़ पौधे भी हैं। इन बच्चों के साथ इनके शिक्षक भी हैं।